मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार
कोरोना के प्रभाव से हमारी मन की बात भी अछूती नहीं रही है
जब मैंने पिछली बार आपसे मन की बात की थी तब पैसेंजर ट्रेनें बंद थीं बसें बंद थीं हवाई सेवा बंद थी
इस बार बहुत कुछ खुल चुका है श्रमिक स्पेशियल ट्रेनें चल रही हैं अन्य स्पेशियल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं
तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं धीधीरे रेउद्योग भी चलना शुरू हुआ है यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है खुल गया है
ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है
दो गज की दूरी का नियम हो मुँह पर मास्क लगाने की बात हो हो सके वहाँ तक घर में रहना हो ये सारी बातों का पालन उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए
देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है
जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वास्तव में भारतवासियों की उपलब्धि कितनी बड़ी है
हमारी जनसँख्या ज़्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है
हमारे देश में चुनौतियाँ भी भिन्न प्रकार की हैं लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फ़ैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला
कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है
जो नुकसान हुआ है उसका दुःख हम सबको है
लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाएं हैं वो निश्चित तौर पर देश की सामूहिक संकल्पशक्ति का ही परिणाम है
इतने बड़े देश में हरएक देशवासी ने खुद इस लड़ाई को लड़ने की ठानी है ये पूरी मुहिम पियोपल ड्राइवेन है
साथियो देशवासियों की संकल्पशक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो है देशवासियों की सेवाशक्ति
वास्तव में इस माहामारी के समय हम भारतवासियों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है बल्कि भारत की जीवनपद्धति है और हमारे यहाँ तो कहा गया है सेवा परमो धर्म
सेवा स्वयं में सुख है सेवा में ही संतोष है
आपने देखा होगा कि दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति के जीवन में कोई डिप्रेशन या तनाव कभी नहीं दिखता
उसके जीवन में जीवन को लेकर उसके नजरिए में भरपूर आत्मविश्वास सकारात्मकता और जीवंतता प्रतिपल नजर आती है
साथियो हमारे डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ सफाईकर्मी पुलिसकर्मी मीडिया के साथी ये सब जो सेवा कर रहे हैं उसकी चर्चा मैंने कई बार की है
मन की बात में भी मैंने उसका जिक्र किया है
सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है
ऐसे ही एक सज्जन हैं तमिलनाडु के सी मोहन
सी मोहन जी मदुरै में एक सलून चलाते हैं
अपनी मेहनत की कमाई से इन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पांच लाख रूपये बचाए थे लेकिन इन्होंने ये पूरी राशि इस समय जरुरतमंदों ग़रीबों की सेवा के लिए खर्च कर दी
इसी तरह अगरतला में ठेला चलाकर जीवनयापन करने वाले गौतमदास जी अपनी रोजमर्रा की कमाई की बचत में से हर रोज़ दालचावल खरीदकर जरुरतमंदों को खाना खिला रहे हैं
पंजाब के पठानकोट से भी एक ऐसा ही उदाहरण मुझे पता चला
यहाँ दिव्यांग भाई राजू ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई छोटी सी पूंजी से तीन हजार से अधिक मास्क बनवाकर लोगों में बांटे
भाई राजू ने इस मुश्किल समय में करीब 100 परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया है
देश के सभी इलाकों से वूमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के परिश्रम की भी अनगिनत कहानियाँ इन दिनों हमारे सामने आ रही हैं
गांवों में छोटे कस्बों में हमारी बहनेंबेटियाँ हर दिन हजारों की संख्या में मास्क बना रही हैं
तमाम सामाजिक संस्थाएं भी इस काम में इनका सहयोग कर रही हैं
साथियो ऐसे कितने ही उदाहरण हर दिन दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं
कितने ही लोग खुद भी मुझे NamoApp और अन्य माध्यमों के जरिए अपने प्रयासों के बारे में बता रहे हैं
कई बार समय की कमी के चलते मैं बहुत से लोगों का बहुत से संगठनों का बहुत सी संस्थाओं का नाम नहीं ले पाता हूँ
सेवाभाव से लोगों की मदद कर रहे ऐसे सभी लोगों की मैं प्रशंसा करता हूँ उनका आदर करता हूँ उनका तहेदिल से अभिनन्दन करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो एक और बात जो मेरे मन को छू गई है वो है संकट की इस घड़ी में इनोवेशन
तमाम देशवासी गाँवों से लेकर शहरों तक हमारे छोटे व्यापारियों से लेकर स्टार्टअप तक हमारी लैब्स कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नएनए तरीके इज़ाद कर रहे हैं नएनए इनोवेशन कर रहे हैं
जैसे नासिक के राजेन्द्र यादव का उदाहरण बहुत दिलचस्प है
राजेन्द्र जी नासिक में सतना गाँव के किसान हैं
अपने गाँव को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने अपने ट्रैक्टर से जोड़कर एक सैनिटाइजेशन मशीन बना ली है और ये इनोवेटिव मशीन बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रही है
इसी तरह मैं सोशल मीडिया में कई तस्वीरें देख रहा था
कई दुकानदारों ने दो गज की दूरी के लिए दुकान में बड़े पाइपलाइन लगा लिए हैं जिसमें एक छोर से वो ऊपर से सामान डालते हैं और दूसरी छोर से ग्राहक अपना सामान ले लेते हैं
इस दौरान पढ़ाई के क्षेत्र में भी कई अलगअलग इनोवेशन शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर किए हैं
ओनलाइन क्लासेस वीडियो क्लासेस उसको भी अलगअलग तरीकों से इनोवेट किया जा रहा है
कोरोना की वैक्सीन पर हमारी लैब्स में जो काम हो रहा है उस पर तो दुनियाभर की नज़र है और हम सबकी आशा भी
किसी भी परिस्थिति को बदलने के लिए इच्छाशक्ति के साथ ही बहुत कुछ इनोवेशन पर भी निर्भर करता है
हजारों सालों की मानवजाति की यात्रा लगातार इनोवेशन से ही इतने आधुनिक दौर में पहुँची है इसलिए इस महामारी पर जीत के लिए हमारे ये विशेष इनोवेशंस भी बहुत बड़ा आधार है
साथियो कोरोना के खिलाफ़ लड़ाई का यह रास्ता लंबा है
एक ऐसी आपदा जिसका पूरी दुनिया के पास कोई इलाज ही नहीं है जिसका कोई पहले का अनुभव ही नहीं है तो ऐसे में नयीनयी चुनौतियाँ और उसके कारण परेशानियाँ हम अनुभव भी कर रहें हैं
ये दुनिया के हर कोरोना प्रभावित देश में हो रहा है और इसलिए भारत भी इससे अछूता नहीं है
हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो परेशानी में न हो और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब मजदूर श्रमिक वर्ग पर पड़ी है
उनकी तकलीफ उनका दर्द उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती
हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो
हम सब मिलकर इस तकलीफ को इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं पूरा देश प्रयास कर रहा है
हमारे रेलवे के साथी दिनरात लगे हुए हैं
केंद्र हो राज्य हो स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो हर कोई दिनरात मेहनत कर रहें हैं
जिस प्रकार रेलवे के कर्मचारी आज जुटे हुए हैं वे भी एक प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़े कोरोना वॉरियर्स ही हैं
लाखों श्रमिकों को ट्रेनों से और बसों से सुरक्षित ले जाना उनके खानेपाने की चिंता करना हर जिले में क्वारंटाइन केन्द्रों की व्यवस्था करना सभी की टेस्टिंग चेकअप उपचार की व्यवस्था करना ये सब काम लगातार चल रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में चल रहे हैं
लेकिन साथियो जो दृश्य आज हम देख रहे हैं इससे देश को अतीत में जो कुछ हुआ उसके अवलोकन और भविष्य के लिए सीखने का अवसर भी मिला है
आज हमारे श्रमिकों की पीड़ा में हम देश के पूर्वीं हिस्से की पीड़ा को देख सकते हैं
जिस पूर्वी हिस्से में देश का ग्राउथ इंजीन बनने की क्षमता है जिसके श्रमिकों के बाहुबल में देश को नई ऊँचाई पर ले जाने का सामर्थ्य है उस पूर्वी हिस्से का विकास बहुत आवश्यक है
पूर्वी भारत के विकास से ही देश का संतुलित आर्थिक विकास संभव है
देश ने जब मुझे सेवा का अवसर दिया तभी से हमने पूर्वी भारत के विकास को प्राथमिकता दी है
मुझे संतोष है कि बीते वर्षों में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अब प्रवासी मजदूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना भी आवश्यक हो गया है और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहें हैं
जैसे कहीं श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम हो रहा है कहीं स्टार्टअप्स इस काम में जुटे हैं कहीं माइग्रेशन कमिशन बनाने की बात हो रही है
इसके अलावा केंद्र सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं उससे भी गाँवों में रोजगार स्वरोजगार लघु उद्योगों से जुड़ी विशाल संभावनाएँ खुली हैं
ये फैसले इन स्थितियों के समाधान के लिए हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए हैं अगर हमारे गाँव आत्मनिर्भर होते हमारे कस्बे हमारे जिले हमारे राज्य आत्मनिर्भर होते तो अनेक समस्याओं ने वो रूप नहीं लिया होता जिस रूप में वो आज हमारे सामने खड़ी हैं
लेकिन अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ना मानव स्वभाव है
तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है
लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है
इस मिशन का नेतृत्व देशवासी अपने हाथ में ले रहे हैं
बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जोजो सामान उनके इलाके में बनाए जाते हैं उनकी एक पूरी लिस्ट बना ली है
ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल फोर लोकल को प्रोमोट भी कर रहे हैं
मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले इसके लिए सब कोई अपनाअपना संकल्प जता रहा है
बिहार के हमारे एक साथी श्रीमान् हिमांशु ने मुझे NaMoApp पर लिखा है कि वो एक ऐसा दिन देखना चाहते हैं जब भारत विदेश से आने वाले आयात को कम से कम कर दे
चाहे पेट्रोल डीजल ईंधन का आयात हो इलेक्ट्रॉनिक आइटेम्स का आयात हो यूरिया का आयात हो या फिर खाद्य तेल का आयात हो
मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ
हमारे देश में कितनी ही ऐसी चीजें बाहर से आती हैं जिन पर हमारे ईमानदार टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है जिनका विकल्प हम आसानी से भारत में तैयार कर सकते हैं
असम के सुदीप ने मुझे लिखा है कि वो महिलाओं के बनाए हुए लोकल बम्बू प्रोडक्ट्स का व्यापार करते हैं और उन्होंने तय किया है कि आने वाले 2 वर्ष में वे अपने बम्बू प्रोडक्ट को एक ग्लोबल ब्रांड बनायेंगे
मुझे पूरा भरोसा है आत्मनिर्भर भारत अभियान इस दशक में देश को नई ऊँचाई पर ले जाएगा
मेरे प्यारे देशवासियो कोरोना संकट के इस दौर में मेरी विश्व के अनेक नेताओं से बातचीत हुई है लेकिन मैं एक सीक्रेट जरुर आज बताना चाहूँगा विश्व के अनेक नेताओं की जब बातचीत होती है तो मैंने देखा इन दिनों उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी योग और आयुर्वेद के सम्बन्ध में होती है
कुछ नेताओं ने मुझसे पूछा कि कोरोना के इस काल में ये योग और आयुर्वेद कैसे मदद कर सकते हैं
साथियो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आने वाला है
योग जैसेजैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है
अभी कोरोना संकट के दौरान भी ये देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से हरिद्वार तक घर में रहते हुए लोग योग पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं
हर जगह लोगों ने योग और उसके साथसाथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा है उसे अपनाना चाहा है
कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया वे भी या तो ओनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ओनलाइन वीडियो के माध्यम से भी योग सीख रहे हैं
सही में योग कम्यूनिटी इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है
साथियो कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है
योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम हैं जिनका असर हम लम्बे समय से देखते आ रहे हैं
ये टाइम टेस्टेड टेकनिक्स हैं जिसका अपना अलग महत्व है
कपालभाती और अनुलोमविलोम प्राणायाम से अधिकतर लोग परिचित होंगे
लेकिन भस्त्रिका शीतली भ्रामरी जैसे कई प्राणायाम के प्रकार हैं जिसके अनेक लाभ भी हैं
वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है
आयुष मंत्रालय ने माय लाइफ माय योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है
भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं
इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना तीन मिनट का एक वीडियो बना करके अपलोड करना होगा
इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हों वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में भी बताना है
मेरा आपसे अनुरोध है आप सभी इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिए
साथियो हमारे देश में करोडोंकरोड़ ग़रीब दशकों से एक बहुत बड़ी चिंता में रहते आए हैं अगर बीमार पड़ गए तो क्या होगा अपना इलाज कराएं या फिर परिवार के लिए रोटी की चिंता करें
इस तकलीफ को समझते हुए इस चिंता को दूर करने के लिए ही करीब डेढ़ साल पहले आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई थी
कुछ ही दिन पहले आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ के पार हो गई है
एक करोड़ से ज्यादा मरीज मतलब देश के एक करोड़ से अधिक परिवारों की सेवा हुई है
एक करोड़ से ज्यादा मरीज का मतलब क्या होता है मालूम है एक करोड़ से ज्यादा मरीज़ मतलब नॉर्वे जैसा देश सिंगापुर जैसा देश उसकी जो टोटल जनसँख्या है उससे दो गुना लोगों को मुफ्त में इलाज दिया गया है
अगर गरीबों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज के लिए पैसे देने पड़ते इनका मुफ्त इलाज नहीं हुआ होता तो उन्हें एक मोटामोटा अंदाज़ है करीबकरीब 14 हज़ार करोड़ रूपए से भी ज्यादा अपनी जेब से खर्च करने पड़ते
आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों के पैसे खर्च होने से बचाए हैं
मैं आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों के साथसाथ मरीजों का उपचार करने वाले सभी डॉक्टरों नर्सेस और मेडिकल स्टाफ को भी बधाई देता हूँ
आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है
पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती
इसी तरह महाराष्ट्र का कोई गरीब चाहे तो उसे इलाज की वही सुविधा तमिलनाडु में मिलती
इस योजना के कारण किसी क्षेत्र में जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था कमजोर है वहाँ के गरीब को देश के किसी भी कोने में उत्तम इलाज कराने की सहूलियत मिलती हैं
साथियो आप ये जानकर हैरान रह जायेंगे कि एक करोड़ लाभार्थियों में से 80 प्रतिशत लाभार्थी देश के ग्रामीण इलाकों के हैं
इनमें भी करीबकरीब 50 प्रतिशत लाभार्थी हमारी माताएँबहने और बेटियाँ हैं
इन लाभार्थियों में ज्यादातर लोग ऐसी बीमारियों से पीड़ित थे जिनका इलाज सामान्य दवाओं से संभव नहीं था
इनमें से 70 प्रतिशत लोगों की सर्जरी की गई है
आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तकलीफों से इन लोगों को मुक्ति मिली है
मणिपुर के चुराचांदपुर में छह साल के बच्चे केलेनसांग उसको भी इसी तरह आयुष्मान योजना से नया जीवन मिला है
केलेनसांग को इतनी छोटी उम्र में ब्रेन की गंभीर बीमारी हो गई
इस बच्चे के पिता दिहाड़ीमज़दूर हैं और माँ बुनाई का काम करती हैं
ऐसे में बच्चे का इलाज़ कराना बहुत कठिन हो रहा था
लेकिन आयुष्मान भारत योजना से अब उनके बेटे का मुफ्त इलाज हो गया है
कुछ इसी तरह का अनुभव पुडुचेरी की अमूर्था वल्ली जी का भी है
उनके लिए भी आयुष्मान भारत योजना संकटमोचक बनकर आई है
अमूर्था वल्ली जी के पति की हर्ट अटैक से दुखद मृत्यु हो चुकी है
उनके 27 साल के बेटे जीवा को भी हर्ट की बीमारी थी
डॉक्टर्स ने जीवा के लिए सर्जरी की सलाह दी थी लेकिन दिहाड़ीमजदूरी करने वाले जीवा के लिए अपने खर्च से इतना बड़ा आपरेशन करवाना संभव ही नहीं था लेकिन अमूर्था वल्ली ने अपने बेटे का आयुष्मान भारत योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया और नौ दिनों बाद बेटे जीवा के हर्ट की सर्जरी भी हो गई
साथियो मैंने आपको सिर्फ तीनचार घटनाओं का जिक्र किया
आयुष्मान भारत से तो ऐसी एक करोड़ से अधिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं
ये कहानियाँ जीतेजागते इंसानों की हैं दुखतकलीफ से मुक्त हुए हमारे अपने परिवारजनों की है
आपसे मेरा आग्रह है कभी समय मिले तो ऐसे व्यक्ति से जरूर बात करियेगा जिसने आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज कराया हो
आप देखेंगे कि जब एक गरीब बीमारी से बाहर आता है तो उसमें गरीबी से लड़ने की भी ताकत नजर आने लगती है
और मैं हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर से कहना चाहता हूँ आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ है उनके जीवन में जो सुख आया है संतोष मिला है उस पुण्य के असली हकदार आप भी हैं हमारा ईमानदार टैक्स पेयर भी इस पुण्य का हकदार है
मेरे प्यारे देशवासियो एक तरफ़ हम महामारी से लड़ रहें हैं तो दूसरी तरफ़ हमें हाल में पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा है
पिछले कुछ हफ़्तों के दौरान हमने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सुपर साइक्लोन अम्फान का कहर देखा
तूफ़ान से अनेकों घर तबाह हो गए
किसानों को भी भारी नुकसान हुआ
हालात का जायजा लेने के लिए मैं पिछले हफ्ते ओडिशा और पश्चिम बंगाल गया था
पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों ने जिस हिम्मत और बहादुरी के साथ हालात का सामना किया है प्रशंसनीय है
संकट की इस घड़ी में देश भी हर तरह से वहाँ के लोगों के साथ खड़ा है
साथियो एक तरफ़ जहाँ पूर्वी भारत तूफान से आयी आपदा का सामना कर रहा है वहीँ दूसरी तरफ़ देश के कई हिस्से टिड्डियों या लोकस्ट के हमले से प्रभावित हुए हैं
इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि ये छोटा सा जीव कितना नुकसान करता है
टिड्डी दल का हमला कई दिनों तक चलता है बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है
भारत सरकार हो राज्य सरकार हो कृषि विभाग हो प्रशासन भी इस संकट के नुकसान से बचने के लिए किसानों की मदद करने के लिए आधुनिक संसाधनों का भी उपयोग कर रहा है
नएनए आविष्कार की तरफ़ भी ध्यान दे रहा है और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के हमारे कृषि क्षेत्र पर जो ये संकट आया है उससे भी लोहा लेंगे बहुत कुछ बचा लेंगे
मेरे प्यारे देशवासियो कुछ दिन बाद ही 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी आई विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल की थीम है बियो डाइवर्सिटी यानी जैवविविधिता आई वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है आई लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ़्तों में जीवन की रफ़्तार थोड़ी धीमी जरुर हुई है लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता को जैवविविधता को करीब से देखने का अवसर भी मिला है आई आज कितने ही ऐसे पक्षी जो प्रदूषण और शोरशराबे में ओझल हो गए थे सालों बाद उनकी आवाज़ को लोग अपने घरों में सुन रहे हैं आई अनेक जगहों से जानवरों के उन्मुक्त विचरण की खबरें भी आ रही हैं आई मेरी तरह आपने भी सोशल मीडिया में ज़रूर इन बातों को देखा होगा पढ़ा होगा
बहुत लोग कह रहे हैं लिख रहे हैं तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि वह अपने घर से दूरदूर पहाड़ियां देख पा रहे हैं दूरदूर जलती हुई रोशनी देख रहे हैं
इन तस्वीरों को देखकर कई लोगों के मन में ये संकल्प उठा होगा क्या हम उन दृश्यों को ऐसे ही बनाए रख सकते हैं आई इन तस्वीरों नें लोगों को प्रकृति के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी दी है आई नदियां सदा स्वच्छ रहें पशुपक्षियों को भी खुलकर जीने का हक़ मिले आसमान भी साफ़सुथरा हो इसके लिए हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की प्रेरणा ले सकते हैं आई
मेरे प्यारे देशवासियो हम बारबार सुनते हैं जल है तो जीवन है जल है तो कल है लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है
वर्षा का पानी बारिश का पानी ये हमें बचाना है एकएक बूंद को बचाना है
गाँवगाँव वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएँ परंपरागत बहुत सरल उपाय हैं उन सरल उपाय से भी हम पानी को रोक सकते हैं आई पाँच दिन सात दिन भी अगर पानी रुका रहेगा तो धरती माँ की प्यास बुझाएगा पानी फिर जमीन में जायेगा वही जल जीवन की शक्ति बन जायेगा और इसलिए इस वर्षा ऋतु में हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि हम पानी को बचाएँ पानी को संरक्षित करें
मेरे प्यारे देशवासियो स्वच्छ पर्यावरण सीधे हमारे जीवन हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है आई इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी होगी आई मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएँ और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृति के साथ आपका हर दिन का रिश्ता बना रहे आई हाँ गर्मी बढ़ रही है इसलिए पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करना मत भूलियेगा
साथियो हम सबको ये भी ध्यान रखना होगा कि इतनी कठिन तपस्या के बाद इतनी कठिनाइयों के बाद देश ने जिस तरह हालात संभाला है उसे बिगड़ने नहीं देना है आई हमें इस लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने देना है आई हम लापरवाह हो जाएँ सावधानी छोड़ दें ये कोई विकल्प नहीं है आई कोरोना के खिलाफ़ लड़ाई अब भी उतनी ही गंभीर है
आपको आपके परिवार को कोरोना से अभी भी उतना ही गंभीर ख़तरा हो सकता है आई हमें हर इंसान की ज़िन्दगी को बचाना है इसलिए दो गज की दूरी चेहरे पर मास्क हाथों को धोना इन सब सावधानियों का वैसे ही पालन करते रहना है जैसे अभी तक करते आए हैं आई मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने लिए अपनों के लिए अपने देश के लिए ये सावधानी ज़रूर रखेंगे आई इसी विश्वास के साथ आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनायें हैं आई अगले महीने फिर एक बार मन की बात अनेक नए विषयों के साथ जरुर करेंगे
धन्यवाद आई